भगवान जी का मूर्ति के पीछे एक घड़ी है।

चप्पल का शॉप में बहोत बैलून टँगा हुआ है।

दुकान में एक जेरेस्क जेरॉक्स मशीन है।

इसमें एक स्कैनर लगाया हुआ है।

और यहां चार चम्मच दिख रहा है चार प्लेट दिख रहा है।

इसका गमछी रेड कलर का है।

थोड़ा साइड में रेड जैसा है।

और एक लेडिस के हाथ में कागज है।

लेडीज के पीछे एक आदमी चश्मा पहना हुआ है।

यहां पे बहुत आदमी पूजा करने आए हैं।

और गेट का ऊपर में एक बल्ब लगाया हुआ है।

उसके साइड में एक बाइक खड़ा है और यहां पे बहुत सारा पेर पेड़ है।

और गेट के साइड- साइड में भी र दीवाल है और दीवाल का कलर वाइट और ऑरेंज है।